सामने दो बड़ा सा गेट लगा है सांगवान आटो वर्क शाप है ये कार ए_सी लिखा गया है और ऊपर कास कास्ट्रोल लिखा गया है सर्वी--

तीन आदमी दिख रहा है। दो आदमी बैग लिए हुए है और पीछे टाँगने वाला और एक हाथ में बैग लिया हुआ है ऑटो दिख रहा है तार दिख रहा है खंबा दिख रहा है।

पीछे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और डुलची दिखाई दे रही है ग्रीन कलर का--

सामने खंभा भी है खंभे में बहोत सारे तार लगे हुए हैं और पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिख रहा है।

पीछे झाड़ दिखाई दे रहा है उपर लिखा गया है गोल्डन हट्स और एक हाथी की मूर्ति दिखाई दे रही है ।

ये एक फील्ड है फील्ड मे बहोत सारी महिलाएं योग कर रही हैं चटाई पर आ चटाई के कलर लाल और नीला रंग में है और दो आदमी बैठे हुए हैं और--

ये एक शादी का स्टेज है एक सोफा रखा गया है सोफे का कलर सफ़ेद है और थोड़ा रेड भी है और पीछे फूलों से डेकोरेट किया गया है पर्दा भी लगा है पर्दा का कलर --

एक कैफ़े है कैफ़े के सामने घुमाड़े का डेकोरेट किया गया है घुमडेका नीला गुलाबी काला और सफ़ेद है ऊपर लिखा गया है मिल्क शेक एंड को --

एक केबिन है केबिन में एक टेबल है चार खुर्ची दिखाई दे रही है और एक टेबल पर एक बैगनी कलर की ड्रेस पहनी हुयी औरत दिख रही है जो की हात--

और बिल्डिंगे जो है बनी हुई है पेड़ दिखाई दे रहा है और भी और एक --

चार आदमी दिख रहें हैं एक आदमी साइकिल पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा हैं और माक्स लगाया हैं।

एक गोल्डन कलर में गौतम बुद्धजी का मूर्ति बना हुआ और उसके निचे एक आदमी स खड़ा हुआ है जो की सफ़ेद रंग का शर्ट पहना हुआ है.

और बगल में डाक्टर सतपाल अ का पोस्टर लगा है शटर बंद है डबल बिल्डिंग है।

ये एक हॉस्पिटल हैं हॉस्पिटल के बाहर का सी सीन लिया गया हैं हेल्थ फेम लिखा गया गया हैं द राईट वे टू डायग्नोस्टिक दरवाजा बंद हैं।

और बहुत सारी इटन रखी गयी हैं और पहाड़ दिख रहा हैं पहाड़ पर हरी हरी घासे दिख रही हैं और आसमान दिख रहा हैं।

और हम्म्म्म चपल वो सड़क पर निकाला हुआ है ट्रांसफार्मर दिखरा है बोहोत सारी तार दिख रही सड़क के किनारे --

अरे एक घर दिखाई दे रहा है और पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है पेड़ बहोत सारी है और सड़क पर खंभे भी पोस्टर भी लगा है--

लाल और सफेद है और कुर्सी दिखाई दे रही है और सामने उम बिल्डिंग के सामने नीचे--

समुद्र के किनारे किनारा किनारे का सीन दिख रहा है व पत्थर दिखाई दे रहा है किनारे--

ये एक मंदिर है मंदिर में तीन मूरत रखी गयी है ए एक आदमी दिख रहा है जो की पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है पॉलथिन है पॉलथिन में कुछ रखा गया है नारियल दिख रहा है।

और तांबे का लोटा दिख रहा है घड़े में पानी है दो थाली है थाली में पीले और नारंगी रंग में कुछ रखा गया है।